टमाटरो का सीजन अभी जैसे कि टमाटर काफी ज्यादा महेंगे हो चुके है।

साइड में सुपर लिखा हुआ है और एल.जी. कंपनी की टी.वी. याँ हैं ये सारी।

और तीन हरी बोट हैं एकओरेंज है।

ये एक कटिंग करने वाले की दुकान है जैसे की सैलून ।

आ और काफी सारे लोग यहाँ पर इक्कठे हुए है।

दो तीन मंजिला घर दिखाई दे रहे हैं और कुछ झोपड़ी भी हैं जिसके नीचे दुकान लगी हुई हैं और कुछ व्यक्ति भी दिख --

और भी बहुत सारे फल यहाँ पर दिखाई दे रहे है एन्ड कोई की बेल लगी हुई है।

लकड़ियों से जाली बनी हुई है।

और बोट के अंदर दो लोग है और उसके उधर खेत दिखाई दे रहे है खेत काफी बड़े-बड़े खेत है तालाब भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।

ऊपर आसमान नजर आ रहा है आसमान सफ़ेद नीला एन्ड का --

हां बुरखे में का बुरखे में भी कुछ लेडीसे यहाँ पर नजर आ रही हैं जो कि अपने बच्चों को --

यह एक रेडीमेट कपड़ो की दुकान है यहाँ पर बच्चो के --

ओम ट्रेवेल्स दुसरे पे लिखा हुआ है श्री कृष्णा।

यहाँ एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के के पास मे पुल बना हुआ है। पुल टूटा-फूटा है ।

यहाँ पर घर बनाने का काम चल रहा है ईंट की दीवारें खड़ी करी है और --